व्हाइट कलर का फ्रॉक जो नृत्य कर रही है डांस कर रही है।

गेट लगाया हुआ है और कुर्सी लगाई हुई है कुर्सी पे पर्दा डाला हुआ है वाइट कलर का।

ऊपर से धूप भी आ रहा है।

एक रैक बनाया हुआ है रैक में कुछ मिठाइयां रखी हुई है डिस्पोजर रखा हुआ है।

यहां पे मैरिज हॉल का दृश्य दिख रहा है।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

दुकान में कई सारी रेके बनाई हुई है रेक लकड़ी का बनाया हुआ है।

यहां पे स्टोल का दृश्य देख रहा है।